मेरे प्यारे परिवारजन नमस्कार
मन की बात के अगस्त एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुतबहुत स्वागत है
मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दोदो बार मन की बात का कार्यक्रम हुआ लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है
सावन यानि महाशिव का महीना उत्सव और उल्लास का महीना
चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है
चंद्रयान को चन्द्रमा पर पहुँचे तीन दिन से ज्यादा का समय हो रहा है
ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है
जब आज आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं
आसमान में सिर उठाकर
घने बादलों को चीरकर
रोशनी का संकल्प ले
अभी तो सूरज उगा है
दृढ़ निश्चय के साथ चलकर
हर मुश्किल को पार कर
घोर अंधेरे को मिटाने
अभी तो सूरज उगा है
आसमान में सिर उठाकर
घने बादलों को चीरकर
अभी तो सूरज उगा है
मेरे परिवारजन 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चाँद पर भी उगते हैं
मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है
साथियो इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सब के साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं
आपको याद होगा इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें वूमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है
जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है वहाँ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है
भारत का मिशन चंद्रयान नारीशक्ति का भी जीवंत उदाहरण है
इस पूरे मिशन में अनेकों वूमेन साइंटिस्ट्स और इंजिनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं
इन्होंने अलगअलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं
भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं
किसी देश की बेटियाँ जब इतनी आकांक्षी हो जाएं तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है
साथियो हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं
चंद्रयान3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है
तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है
जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली
यही चंद्रयान3 की सबसे बड़ी सफलता है
मैं कामना करता हूँ कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसे ही अनगिनत सफलताएँ हासिल करेगा
मेरे परिवारजनों सितम्बर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है
अगले महीने होने जा रही G20 लीडर्स सम्मित के लिए भारत पूरी तरहसे तैयार है
इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल आर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं
G20 सम्मित के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी
अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इन्क्लूसिव फोरम बनाया है
भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकान यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफार्म platformतक पहुंची
साथियो पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है
दिल्ली में बड़ेबड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलगअलग शहरों में ले गए
देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीबकरीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया
G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया
ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए
उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं
साथियो G20 की हमारी प्रेसिडेंसी peopleएस प्रेसिडेंसी है जिसमें जनभागीदारी की भावना सबसे आगे है
G20 के जो ग्यारह एंगेजमेंट ग्रुप्स थे उनमें अकादेमिया सिविल सोसाइटी युवा महिलाएं हमारे सांसद एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई
इसे लेकर देशभर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से डेढ़ करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं
जनभागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दोदो विश्व रिकॉर्ड रेकॉर्ड भी बन गए हैं
वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के सवा लाख स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया
वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया
450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेस का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है
G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए
ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया
वहां हुए साड़ी वालकाठों में 15 राज्यों की 15000 महिलाओं ने हिस्सा लिया
इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही वोकल फोर लोकल वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना
श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है
मैं सभी देशवासियो को कहूँगा कि आइए मिलकर G20 सम्मलेन को सफल बनाएं देश का मान बढ़ाएं
मेरे परिवारजनों मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं
आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे युवा निरंतर नई सफलताएँ हासिल कर रहे हैं
मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहाँ हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है
कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे
इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है
हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते जिनमें से 11 गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल थे
आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुँचती है
इतने दशकों में सिर्फ 18 जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए
इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी विद्यार्थी इस समय फोन लाइन फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं
मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूँ
यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी आर्चरी में मेडल जीता है
असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स एथलेटिक्स में मेडल जीता है
यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वाल्क रेस वाक में मेडल जीता है
महाराष्ट्र की रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग शूटिंग में मेडल जीता है
मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियो नमस्कार
नमस्ते सर
मुझे आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है
मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ
आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया है
तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुतबहुत बधाई देता हूँ
प्रगति मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ
आप सबसे पहले मुझे बताइए कि दो मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई तब ये सोचा था क्या और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है
प्रगति सर बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊँचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है कि गोल्ड फाइट में पहुंचे थे उसको लोसे किया था तो रिग्रेट हो रहा था
पर दूसरी बार ये ही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए ये इसको नीचे नहीं जाने देना है
इसको हर हाल में सबसे ऊँचा लहरा के ही आना है
जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वही पोडियम पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था
वो मोमेंट बहुत अच्छा था
इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका
प्रगति आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रोब्लेम आए थे
उसमें से आप उभर करके आईं
ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग हैं
क्या हुआ था आपको
प्रगति सर 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हेमोरेज हुआ था
मैं वेंटीलेटर पे थी
कुछ कन्फर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी की नहीं और बची तो कैसे बचूंगी बट इतना था कि हाँ मुझे अन्दर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है वापिस ग्राउंड पर खड़े होना है अरो चलाने
मेरे को मेरी ज़िन्दगी बचाई है तो सबसे बड़ा हाथ भगवान का उसके बाद डॉक्टर का फिर आर्चरी का
हमारे साथ अम्लान भी है
अम्लान जरा बताइये आपकी एथलेटिक्स के प्रति इतनी ज्यादा रूचि कैसे डेवलप की
जी नमस्कार सर
नमस्कार नमस्कार
सर एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रूचि नहीं थी
पहले हम फुटबॉल में थे ज्यादा
बट जैसेजैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कॉम्पिटिशन में जाना चाहिये
तो मैंने सोचा चलो ठीक है तो पहला जब मैंने स्टेट मीत खेला तो मैं हार गया उसमें
तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी
तो ऐसे करतेकरते मैं एथलेटिक्स में आ गया
फिर ऐसे ही धीरेधीरे अभी मजा आने लग रहा है
तो वैसे ही मेरा रूचि बढ़ गया
अम्लान जरा बताइए ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की
ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है साई रेड्डी सर के अंडर
फिर उसके बाद में भुबनेश्वर में शिफ्ट हो गया तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर
अच्छा हमारे साथ प्रियंका भी है
प्रियंका आप 20 किलोमीटर रेस वाल्क टीम का हिस्सा थीं
सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं
आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल्स की जरुरत होती है
और आपकी कैरियर कहाँकहाँ से कहाँ पहुँची
मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टाउघ है क्योंकि हमारे पांच जज खड़े होते हैं
अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं
या फिर हमने कनी बेंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं और मेरे को तो वार्निंग भी दो आ गई थी
उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं न कहीं मुझे टीम मेडल तो एटी लीस्ट यहाँ से जीतना ही है
क्योंकि हम देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है
जी और पिताजी भाई वगैरा सब ठीक हैं
हां जी सर सब बढिया मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटीवेट करते हैं हम लोग को सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता है लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलम्पिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है
चलिए प्रियंका मेरी तरफ से बधाई है
आपने बड़ा नाम रोशन किया है आईये हम अभिदन्या से बात करते हैं
अभिदन्या नमस्ते सर
बताइये अपने विषय में
अभिदन्या सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ मैं शूटिंग में 25m स्पोर्ट्स पिस्तोल और 10m एयर पिस्तोल दोनों इवेंट करती हूँ
मेरे मातापिता दोनों एक हिघ स्कूल टीचर हैं तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया
जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी बस से ट्रैवल करके वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए डेढ़ घंटा लगता है तो वापस आने के लिए डेढ़ घंटा और चार घंटे की ट्रेनिंग तो ऐसे 67 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी तो फिर मम्मीपापा ने बोला कि बेटा एक काम करो हम आपको सैचरडेसंडे को ले के जायेंगे शूटिंग रंगे के लिए और बाकी टाइम्स आप दूसरे गेम्स करो
तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में क्योंकि मेरे मम्मीपापा दोनों को खेल में काफी रूचि थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए
तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रूचि लेती थी और फिर मैंने ताएक्वोंडो भी किया है उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग जुडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो जैसे बहुत सारे गेम्स करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गयी
फिर 23 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला
फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रंगे बनवाई फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए
तो यहां पर गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है गुन फोर ग्लोरी तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया
अच्छा आप चारों मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूँगा
प्रगति हो अम्लान हो प्रियंका हो अभिदन्या हो
आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरुर सुनूंगा
सर मेरा एक सवाल है सर
आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौनसा लगता है सर
खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ लेकिन हॉकी फुटबॉल कबड्डी खोखो ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं इसमें तो हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं
और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ में और एवेन परिवारों में भी खेल के प्रति पहले जो भाव था वो नहीं है
पहले तो बच्चा खेलने जाता था तो रोकते थे और अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं न वो सभी परिवारों को मोटीवेट करती है
हर खेल में जहाँ भी हमारे बच्चें जा रहे हैं कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं
और ये ख़बरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं
चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी तरफ से आप सबको बहुतबहुत बधाई
बहुत शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद थांक यू सिर धन्यवाद
धन्यवाद जी नमस्कार
मेरे परिवारजनों इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा
सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया
इस अभियान के दौरान कई रेकॉर्ड भी बने
देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे
डेढ़ लाख पोस्ट आफिसों के जरिए करीब डेढ़ करोड़ तिरंगे बेचे गए
इससे हमारे कामगारों की बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए की आय भी हुई है
तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रेकॉर्ड बना दिया
पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी
इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई है
साथियो इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है
सितंबर के महीने में देश के गाँवगाँव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा
देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी
अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेंगे
इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा
मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा
मेरे परिवारजनों इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं
इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है
संस्कृतदिवसस्य हार्द्य शुभकामना
आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुतबहुत बधाई
हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओँ में से एक है
इसे कई आधुनिक भाषाओँ की जननी भी कहा जाता है
संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथसाथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है
भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है
योग आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं
कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
जैसे कि संस्कृत प्रोमोशन फाउंडेशन संस्कृत फोर योग संस्कृत फोर आयुर्वेद और संस्कृत फोर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेस करवाता है
संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है
इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं
मुझे ख़ुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है
इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है
जैसे तीन संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया
अलगअलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं
आईआईटीएस और आईआईएमएस जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं
साथियो अक्सर आपने एक बात ज़रूर अनुभव की होगी जड़ों से जुड़ने की हमारी संस्कृति से जुड़ने की हमारी परम्परा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा
जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं
अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं अपने चिर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं
ऐसे ही भारत की एक और मातृभाषा है गौरवशाली तेलुगू भाषा
29 अगस्त तेलुगू दिवस मनाया जायेगा
अन्दरिकी तेलुगू भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु
आप सभी को तेलुगू दिवस की बहुतबहुत बधाई
तेलुगू भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं
तेलुगू की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले इसके लिए कई प्रयास भी किये जा रहे हैं
मेरे परिवारजनों मन की बात के कई एपिसोड्स में हमने टूरिज्म पर बात की है
चीजों या स्थानों को साक्षात् खुद देखना समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुभव देता है
कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे लेकिन हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते
कोई हिमालय का कितना ही बखान कर दे लेकिन हम हिमालय को देखे बिना उसकी सुन्दरता का आकलन नहीं कर सकते
इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी अपने देश की डाइवर्सिटी उसे ज़रूर देखने जाना चाहिए
अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं हम भले ही दुनिया का कोनाकोना छान लें लेकिन अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं
कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते
ऐसा ही कुछ धनपाल जी के साथ हुआ
धनपाल जी बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट आफिस में ड्राइवर का काम करते थे
करीब 17 साल पहले उन्हें साइटसीइंग विंग में ज़िम्मेदारी मिली थी
इसे अब लोग बेंगलुरु दर्शिनी के नाम से जानते हैं
धनपाल जी पर्यटकों को शहर के अलगअलग पर्यटन स्थलों पर ले जाया करते थे
ऐसी ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया बेंगलुरु में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है
उन्हें बहुत ही ख़राब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था
ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया
अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले
इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा ऐसा रमा कि उन्होंने एपिग्राफी एपिग्राफी यानि शिलालेखों से जुड़े विषय में डिप्लोमा भी कर लिया
हालाँकि अब वे रिटायर हो चुके हैं लेकिन बेंगलुरु के इतिहास खंगालने का उनका शौक अब भी बरक़रार है
साथियो मुझे ब्रियान डी
खरप्राण ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है
ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी स्पेलियोलॉजी में गज़ब की दिलचस्पी है
सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन
वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी
1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया
1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया
देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव एमएपी पर ला दिया
भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद हैं
ब्रियान जी और उनकी टीम ने केव फौना यानि गुफा के उन जीवजंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं
मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं साथ ही मेरा यह आग्रह भी है कि आप मेघालय के गुफाओं में घूमने का प्लान जरुर बनाएं
मेरे परिवारजनों आप सभी जानते हैं कि डैरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है
हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है
कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली
बनास डैरी एशिया की सबसे बड़ी डैरी मानी जाती है
यहां हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है
इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है
दूसरे राज्यों में यहां के दूध की समय पर डिलिवरी हो इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेन्स ट्रेनोंका सहारा लिया जाता था
लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थीं
एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी ख़राब हो जाता था
इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया
रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रकोंट्रैक की सुविधा शुरू की
इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है
यानि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है
ट्रकोंट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं
पहले जिस दूध को पहुँचाने में 30 घंटे लग जाते थे वो अब आधे से भी कम समय में पहुँच रहा हैं
इससे जहाँ ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है
इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राईवरों को भी हुआ है उनका जीवन आसान बना है
साथियों कलेक्टिव इफोर्ट्स से आज हमारी डेयरीज भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है
बनास डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है इसका पता सीडबॉल वृक्षारोपण अभियान से चलता है
वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डैरी फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए मैन्यूर मैनेजमेंट पर काम कर रही है
केरला की मालाबार मिल्क यूनियन डैरी का प्रयास भी बेहद अनूठा है
यह पशुओं की बिमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स विकसित करने में जुटी है
साथियो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डैरी को अपना कर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं
राजस्थान के कोटा में डैरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए
उन्होंने डेयरी के साथ बायोगास पर भी फोकस किया और दो बायोगास प्लांट्स लगाये
इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70 प्रतिशत कम हुआ है
इनका यह प्रयास देशभर के डैरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है
आज कई बड़ी डेयरीज बायोगास पर फोकस कर रही हैं
इस प्रकार के कम्यूनिटी ड्राइवेन वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं
मुझे विश्वास है कि देशभर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे
मेरे परिवारजनों मन की बात में आज बस इतना ही
अब त्योहारों का मौसम भी आ ही गया है
आप सभी को रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं
पर्वउल्लास के समय हमें वोकल फोर लोकल के मंत्र को भी याद रखना है
आत्मनिर्भर भारत ये अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है
और जब त्योहार का माहौल है तो हमें अपनी आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है लेकिन हमेशा के लिए
अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगें
हम देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की उनके सफलता की जीभर करके चर्चा करेंगे
तब तक के लिए मुझे विदा दीजिये
बहुतबहुत धन्यवाद